पिक्चर में मुझे एक चलने की जगह दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे दो आदमी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक बच्चा राइट साइड पर दिखाई दे रहा --

जिस पिक्चर की लेफ्ट साइड पर मुझे एक गेट दिखाई पड़ रहा है।